ईमारत के चारों ओर हरे रंग की सुरक्षात्मक जालियां लगी हुई हैं।

ऐसा लग रहा है कि यह नया आवासीय ब्यवसायी परिसर बन रहा है।

इस तस्वीर में एक बस का अंदरूनी दृश्य दिखाई दे रहा है।

पुरुष ने हल्के रंग कि शर्ट और नीले रंग कि धोती पहनी हुई है।

यह तस्वीर एक इलेक्ट्रॉनिक या घरेलू उपकरणों की दुकान का दृश्य दिखाती है।

यह तस्वीर एक ग्रामीण या उपनगरीय क्षेत्र का दृश्य दिखाती है।

एक बड़ा पेड़ है जिसके नीचे ही हिस्से पर सफेद रंग का पेंट किया गया है।

विभिन्न प्रकार के छोटे पौधे गमलों और कंटेनरों में लगे हुए है।

यह तस्वीर एक छोटी किराने की दुकान का अंदर का दृश्य दिखाती है।

यह तस्वीर राम कॉम्प्लेक्स नामक एक व्यावसायिक इमारत का दृश्य दिखाती है।

इस तस्वीर में मेडिकल स्टोर नामक एक मेडिकल्स का दृश्य दिखाती है।

दो श्री नाइन मॉडल की एक सौ पच्चीस टन की इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लग रही है।

प्रत्येक संरचना के अंदर एक छोटी मूर्ति या सजावटी वस्तु दिखाई दे रही है।

किसी विशेष प्रकार के अवसर के लिए तैयार किया गया है।

मंच पर एक अलंकृत चांदी का सिंहासन रखा हुआ है।

सिंहासन के सामने सफेद फूल और एक मोमबत्ती रखी हुई है।

इस तस्वीर में एक मछली बाजार का दृश्य दिखाई दे रहा है।

रंगीन प्लास्टिक के क्रेटो में बर्फ के ऊपर ताजी मछलियां बिक्री के लिए रखी हुई हैं।

और फर्श पर लाल रंग की त्रिकोणीय और आयताकार डिजाइन बनी हुई है।

यह तस्वीर एक हेयर सैलून का अंदर में दृश्य दिखाती है।

वह हल्के रंग की लंबी बाजू की शर्ट और नीले जींस पहने हुए हैं।

छात्र और शिक्षक इमारत की गलियारों में घूम रहे हैं।

इस तस्वीर में साहिब हैंडलूम नामक एक दुकान की है।

एक क्रेन की मदद से बड़े सफेद बोरे उठाए जा रहे हैं।

यह तस्वीर एक आदमी की इमारत के अंदर का दृश्य दिखाती है।

व्यक्ति ने हरे रंग की टीशर्ट और नीले रंग की शॉर्ट्स पहनी है।